हां ये सजाया गया हैऔर बढ़िया फर्स्ट क्लास है। ये ऊपर में अलग से म म माने कोई लोहा का माने हम्म लगाया गया है जिसके द्वारा जॉइंट दिख रहा है। ये --

और बिजली खम्बा भी लगा है लाइट वगेरा सब बढ़िया फर्स्ट क्लास मैदान दिख रहा है अति जोर दार सुन्दर है और बढ़िया लग रहा है यार दुनु कई डिजाईन से पहने हुए है।